इस तस्वीर में सामने एक चर्च नजर आ रहा है जहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे बोहोत सारे लोग बड़े-बड़े पत्थरों के ऊपर बैठ कर आसपास बहुत सारे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

सामने दो ब-बक्सों में कुछ रखा है। साइड में कुछ व्यक्ति भी बैठ कर हैं।